यहाँ पर सड़क दिखाई दे रही है सड़क से बनी हुई सीढ़ियां दिखाई दे रही है टूटी हुई ऊपर जाने का उधर से उतरने का रास्ता भी दिखाई दे रहा है बीच में एक ट्रैक जारा है|

यह एक वॉटर पार्क का दृश्य है जिसमें नीचे की तरफ पानी दिखाई दे रहा है मोटर लगी हुई है पीछे हरी भरी घास दिखाई दे रही है यहाँ पर टीन शेड दिखाई दे रही है जहाँ से स्लाइड दिखाई दे रही--

ये स्लाइड रंग-बिरंगी जोकि हरे और पीले रंग की पट्टियों से बनी हुई है दूसरी स्लाइड जोकि नारंगी रंग की तीसरी है जोकि सफेद रंग की जिस पर ल नीले और हरे रंग की धारियाँ लगी है।

एक स्टैण्ड लगा है जिसके हुक पर कई सारे गिटार दिखाई दे रहे है नीचे फर्श पर एक की - बोर्ड दिखाई दे रहा है जोकि काले रंग का है ढोलक दिखाई दे रहा है वह लाल रंग की है पीछे की तरफ एक गैब दिखाई दे रहा है जोकि काले रंग --

यहाँ पे एक रेस्टोरेंट का दृश्य है जिसमे नी बीच में एक टेबल पड़ी हुई है टेबल के आसपास कुर्सियां पड़ी हैकुर्सियों पर लोग बैठे हुए है पीछे दीवार दिखाई दे रही है जिसपे खाचे बने हुए है तस्वीरें लगी हुई है।